यहाँ पर एक मैदान दिखाई दे रहा है मैदान में एक स्लाइड्स दिखाई दे रही है जोकी पीले और हरे रंग की हैस्विमिंगपूल का दृश्य है जिमसे स्लाइड्स से उतरते हुए बच्चे सीधे-सीधे डायरेक्ट स्विमिंगपूल में जा रहा ह--

यहाँ पे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की सफेद रंग की जिसपे खिड़कियां लगी हुई है दीवार दिखाई दे रही है खिड़क दिखाई दे रही है जिसपे लाल रंग का बोर्ड लगा है जिसपे हरे रंग का बोर्ड जिसपे सफेद रंग से कुछ लिखा हुआ नीचे का फर्श दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक दुकान का दृश्य है जिसमें पियानो रखा है काले रंग का है पीछे गिटार दिखाई दे रहा है जो की पीले नीले लाल रंग के ढ़ोलक दिखाई दे रही है वो लाल रंग की है --

एक फर्श दिखाई दे रहा है जिसपे पीले और गुलाबी रंग की ईटे बिछी हुई है।

बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो की पर्पल रंग की है जिस पर पिलर दिखाई दे रहा है जो सफेद रंग के हैं सामने एक छाता दिखाई दे रहा है वह लाल और सफेद रंग का है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं पेड़ों की टहनियां दिखाई दे रही है।